और दो वाइट कलर का गाड़ी है यहाँ दो यहाँ पे --

उ सामने मेंघर के तरफ में दो --

बड़ा सा कैक है बिस्किट --

और उसके बगल बहोत सड़क एक आदमी बैठा हुआ है।

चबूतरा जैसा यहाँ पे।

यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

उ बंद कदना दुगो येथिया ह --

यहाँ पे कुछ लिखल है।

बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जिसपे बहोत सारा बिल्डिंग दिख रहे हैं।

कुछ घर दिख रहें हैं।

स्कूल खुल --

साइड में रखा हुआ है कुछ बिल्डिंगस दिख रही हैं और कुछ --

बोर्ड भी लगा हुआ है --

दिख रहा कुछ से यहाँ पे रखा हुआ है।

यहाँ पर एक दुकान जैसा दिख रहा है जिसमें आ नीला अ टॉप --

बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे।

और इसमें और साइड में पेड़ लगा हुआ है पेड़-पौधा --

वहाँ पे यहाँ --